इस तस्वीर में दो ताले का मकान दिखाई दे रहा है मकान का रंग पीला है।

इस तस्वीर में कांच के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं जिसके मदद से बाहर दिखाई दे रहे हैं।

कमरे के अंदर कुछ सामान तथा कुछ मशीन दिखाई दे रहा है।

आस पास कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में अलमारी के पीछे का दीवार हल्के नीले रंग का है।

इस तस्वीर मे स्टेज बनाया गया है।

तस्वीर में ऊपर में अलग अलग तरह के मीठे रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में एक नाव दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर मे एक आदमीन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में कुछ गमले दिखाई दे रहे हैं जिसमें पौधे लगाए गए हैं।

इस तस्वीर में बेसिन दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में दीवार दिखाई दे रहा है।